लाल पिले और गुलाबी कलर के फुल है फुल के बाजू मे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए है।

यह एक बहुत बडा हॉल है। इस हॉल मे बोहोत सारी कुर्सीया रखी है। उस खुरसियो को सफेद कलर के --

यह एक बहुत बडा खेत है। खेत मे चरो ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। खेत मे अलग अलग तरह के बहुत सारे फसल--

यहा पे एक बॉल रखा है यह बॉल जमीन पे है और इसका पीले कलर का है और काले कलर का है अजू बाजू मे बहुत सारे लाइटे भी है उपर की तरफ काला घना आसमान भी है।

कुछ मालाए पीले कलर की है कुछ मालाए सफ़ेद कलर की है और बहुत सारी यहा पे अलग अलग वस्तुए भी है उपर की तरफ एक पंखा भी है।

यह एक बहुत सुंदर जगह है इस जगह में चारो ओर हरियाली ही हरियाली है।

अग आजूबाजू मे बोहोत सारे बडेबडे पेड भी है और उपर कि तरफ सफेद कलर का आसमान भी--